अ कढ़ाईयां रखी हैं पीछे बड़ी बड़ी छोटी कढ़ाई भी है।

किरयाने का सामान होता है ना चावल आटा हो गया पैकेट्स हो गए भुजिया ये सब है।

और यहां पे कुछ किताबें भी रखी हुई है। एक अंकल जी है जो खड़े है हाथ जोड़ के।

और ये एक बुक्स की शॉप है क्योंकि देखो यहां पर काफी सारी किताबें नजर आ रही हैं आस पास मगर आप ध्यान से देखोगे तो--

और सामने की तरफ अ ग्रीन कलर के जो है पर्दे लगे हुए हैं।

काफी सारे यहां पर अ पीछे जो है लाल रंग की चेयर्स है।

इस फोटो में एक यहां पर लड़का खड़ा है जो शेविंग करवा रहा है।

इस लड़के ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्ल्यू कलर की पैंट पहनी हुई है।

सामने एक पोस्टर लगा हुआ है लिखा है राजू नर्सरी और यहां पर काफी सारे गमले पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर जो गेट है वो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है अंदर लाल रंग की दीवार है।

और यहां पर सफेद रंग की दीवार नजर आ रही है।

नीचे टेबल है टेबल पे पानी की बोतल ग्लास मेन्यू और चेयर्स रखी दिखाई दे रही हैं फर्श पे टाइल लगी हुई है।

और दो लड़कियों और भी खड़े हुए हैं।

इस फोटो में यहां पर काफी सारी चेयर्स दिखाई दे रही है। एक टेबल दिखाई दे रही हैं जिसपे येलो कलर की जो हैं --

सर छोटू राम धरमशाला कार्यालय--

ब्लैक एंड व्हाइट कलर की टाइलें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर चेयर लगी हुई है जो की रेड कलर की हैं।

और यहां पर मोबाइल्स और यहां पर मतलब जो भी चीजें होती है ना इयरफोन इयरबड्स और फोन के कवर ये सब यहां मिलता है।

पीछे की तरफ घास दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में यहाँ पर लिखा हैं बेक मॅजिक --